नदी की तरह दिख रहा है नदी को इंग्लिश मे बोलते हैं अह रिवर ।

लेकिन यह दृश्य बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यह गाड़ी को ऊपर रखा हुआ है।

और इस दुकान की बात की जाए तो इसमें नाम लिखा हुआ है डाइटिंग ।

हेल्प कर रहे है एक दूसरे का आगे में आधा--